यहाँ एक बहुत ऊंचा टावर दिखाई दे रहा है जो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पीछे एक फेक्टरी टाइप में कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ --

यहां एक व्हाइट कलर का भवन दिखाई दे रहा है जहां पर साइड में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। यहां बीच में एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में एक फुलवारी भी बनी हुई है जिसमें कई सारे हरे-हरे पेड़ पौधे भी हैं।

यहाँ एक पहाड़ के नीचे से गुफा नज़र आ रही है। यहाँ पर काफी सारा पानी भी है। यहाँ एक पेड़ --

ये इमारत इन इस इमारत के साइड में स्टील की ग्रिल लगी हुई है जो चोखटी उसमे है इसके यहाँ बाहर साइकिल भी खड़ी हुई है।

जिसका गेट ब्लैक कलर का है। ये साइड में दो पिलर्स लगे हुए हैं। रेड कलर के। जिसके ऊपर ऐसे विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे --